इमेज मे हमे एक पार्क जैसा दिखाई दे रहा है देखने मे हमे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर दो तीन पेड़ दिखाई दे रहे है देखने मे हमे बहुत अच्छी दिखाई दे रहे।

इसमे हमे एक पार्क जैसा दिखाई दे रहा है इस मे हम सामने सूरज दादा दिखाई दे रहे है देखने मे भी हमे बहुत अच्छा लग रहा है नीचे पानी बेह रहा है इसमे सामने एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है देखने मे भी बहुत अच्छा लग रहा है।

इसमे हमे जंगली इलाके जैसा दिखाई दे रहा है इसमे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे क्रीम कलर का पानी दिखाई दे रहा है इसमे चार-पाँच शेर बैठे हुए है।

पीला आसमान दिखाई दे रहा है देखने हमे बहुत अच्छा लग रहा है इसी बहुत सारे पेड़े लगाए हुए दिखाई दे रहे है।

खंबा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे एक लाइट लगी हुई है यहा पर बहुत सारी कार खड़ी हुई है सबसे ही आखरी मे यह देखने मे हमे बहुत अच्छा लग रहा है।

एक पर एक पीले येल्लो कलर का पेंट किया गया है यहा पर एक झंडा लहरा रहा है इसमे एक पोस्टर लगा हुआ है दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है इसमे कुछ सिडिया बनी हुई है और इसमे हमे गमले दिखाई दे रहे है एक गेट दिखाई दे रहा है।

और इसमें हमको ऑयल दिखाई दे रहा है शैम्पू दिखाई दे रहे है और साबुन दिखाई दे रही यह देखने मे भी बहुत अच्छा दिखाई दे रही है।